एक गैरेज का फोटो दिखाई दे रहा हैजहाँ पर एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है जो की पिछे से डैमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ पार्ट्स पड़े हुए दिख रहे है।

और कुछ गैरेज का सामान रखा हुआ हैयहाँ पर और यहाँ रेत ही रेत दिखाई दे रही है जिस पर ये खड़ी हुई है निचे की और एक टायर दिखाई दे रहा हे और कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

रोड के इस पार कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही है रोड कच्चा है मिट्टी दिखाई दे रही है जो कि बहुत सारे पत्थर दिख रहे है इस तालाब के पास मे।

और पास मे देखा जाए तो एक और बाल्टी रखी जिसमे गन मशीन का पाइप लगाया गया है एक बाल्टी और भी रखी गई है यहाँ पर--

एक व्यक्ति दिखाई दे रहे है जोकि बैठे हुए है वहाँ पर और कुछ ब्रेड के पैकेट्स दिखाई दे रहे है दुध का घड़े भी रखे हुए है यहाँ पर प्लास्टिक के ब्लू कलर के और उधर कुछ कोल्ड्रिक की बॉटलें हैं।

ये एक होटल का रूम दिखाई दे रहा है बैंक्वेट हॉल भी कह सकते है हम इसे ये मीटिंग के लिए यूज किया गया है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं सेंटर टेबल दिखाई गई हैं।

झूमर लगे हुए है लाइट वाले कर्टन है ब्लैक एंड येल्लो और आर्टिफीसियल फ्लावर्स लगे हुए है सोफे लगाए गए है यहाँ पर वास दिखाई दे रहे है जिसमे फ्लावर्स है।

प्लेट्स रखी हुई है अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है और ये सेंटर टेबल और चेयर रखी हुई है यहाँ डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

ये एक पेंटिंग दिखाई दे रही है जो किसी ने हाथ से बनाई है ये आदिवासी समाज के एक व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो कि ढोलक बजा रहे है।